यहां आपको एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहां पर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां मुझे अ ईटों का रोड भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक मिरर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां लोहे की जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां आपको छोटी छोटी घास भी दिखाई देगी।

इसमें दो आदमी बैठे हुए हैं।

यहां मुझे बहोत से पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ मुझे खम्भा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

मुझे यहां पर एक रोड बना हुआ दिखाई दे रहा हैं।